इस चित्र में हमें ये एक दुकान दिखाई दे रही है ऊपर साइड दुकान है नीचे साइड भी दुकान है ऊपर सूखे हुए आम के पत्ते लग रहे है।

इस चित्र में हमें एक व्यक्ति जोकि नीचे के से नाप लेते नज़र आ रहा है वो बैग पहन के बैठा हुआ है। आजू बाजु में बहुत सारी फर्शिया रखी हुई है।

ये बीच के माले में लोग बहुत खड़े है। ऊपर लाइटें लग रही है। नीचे भी फुग्गो से सजा हुआ रेड कलर की है फुग्गो से सजा हुआ है बाहर साइड लाइटें लगी है आजू बाजु में पेड़ है घर है बहुत सारे खिड़की --